यह एक होटल है होटल में बहुत सारी लइटिंगं लगी हुई है सामने सीढ़ी है सीढ़ी पे रेलिंग लगी हुई है और दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाय दे रहे हैं।

यह एक जंगल है जंगल में रास्ता दिख रहा है और रास्ते में एक गाय खड़ी हुयी है और चट्टान दिखाई दे रही है| पेड़ लगे है ।

केबल खीची हुई है। आसमान दिख रहा है और बीच मोस गेट के ऊपर बीच में गणेश जी प्रतिमा है।

यहाँ पर बहोत सारा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे एक बिजली का खंबा लगा हुआ है और उसमे तार खिचे हैं। ऊपर आसमान है जिसमे सफ़ेद घटायें छाई हुई हैं और --

यह एक मॉल है| जिसमे बहुत सारा सामन रखा हुआ है और लाइटिंग लगी हैं और दीवाल का पेंट ग्रीन कलर का है और वहाँ पर एक वाईट कलर की बोरी रखी हुयी ट्रॉली दिख रही है।